एक पर्दा दिखाई दे रहा है।

कुछ फूलो के रंग लाल है।

इस चित्र में मुझे एक संगणक दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दीवार के कुछ रंग लाल रंग के हैं।

इस दृश्य में हमें दो भालू दिखाई दे रहे है।

हरे घांस दिखाई दे रहे हैं।